और यहाँ पर जो ई-रिक्शा उसके पीछे भी एक ई-रिक्शा खड़ा हुआ है।

क्योंकि क्रीम रंग का वो भी है और यहां कि जो जमीन है वो यहाँ पर भूरे रंग की है स्लेटी रंग की है।

जैसा कि मैं देख पा रही यहाँ पर यह दुकान है जो कि यहाँ पर बहुत सारा सामान बिखरा है तथा कुछ यहाँ पर अलमारीयों में लगा है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं यहां पर एक लोडर में डीजे का सामान लदा हुआ है बहुत सारा।

जमीन यहाँ पर भूरे रंग की नीले रंग का एक वस्तु रखा हुआ गोल चक्करदार रखा हुआ है स्लेटी रंग का आसमान सफेद है।

जो रास्ता है वो स्लेटी रंग का है। ईटे पड़े हुए हैं काले रंग के।

ऊपर जो सफेद रंग की दीवार है। तार गए हुए हैं यहां से। आदमी लोग खड़े हैं। आवागमन हो रहा है तथा यहां पर --

पंडित जी बैठे हैं सफेद रंग के वस्त्र पहनकर। लाल फूल और पीले फूलों से सजावट सफेद फूलों से पीछे के पर्दे पर क्रीम और लाल गुलाबी सफेद रंग के तथा यह फूलों की माला ल --

जोकि काही रंग की और सफेद रंग की है। यहाँ पर एक आदमी जा रहा है जिसने काले रंग की जैकेट पहनी --

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूं यहां पर ये मशीन जो कि पीले और काले रंग की तथा इसके जो नीचे पहिए लगे वो काले रंग के --

आदमी बैठा हुआ है सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए।

अ बस में बोहोत सुंदर से फूलों की माला से सजाया गया जोकि लाल रंग के आसमान सफेद है पूरा यहाँ पर तार गए हुए --

जो कि बोहोत बड़ा है मैदान। यहां पर हरी-हरी घासे उगी पूरे में घास उगी हुई है। जाली लगी हुई है।

जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूं यहाँ पर बहोत बड़ी बिल्डिंग है जो कि भूरे तथा क्रीम रंग का --

और रात्रि का समय है सफेद रंग की लाइट जल रही है पर्दा लगा हुआ है भूरे रंग का इसमें।

आदमी का हांथ फैक्चर है। सफेद रंग से --

चीज पड़ा हुआ है बोहोत सफेद-सफेद रंग का सामने एक आदमी बैठा हुआ है।